मेरे सामने एक सफेद बतक दिखाई दे रही हे एक पुल मे एक दिखाई दे रहीहैये फोटो भी बहोत दूसरे जानते हे।

देखाई दे रहा है न मुझे लोग बाग आते आते भी दिखाई दे रहे है यां पे मौसम भी बोहोत अच्छा हो रहा है धूप भी कम दिखाई दे रही है।

मुझे एक रेलवे फाटक दिखाई दे रहा है जो एक वाइट और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है यहां में पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं मौसम भी साफ दिखाई दे रहा है।